कुछ बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे है भवन का रंग आइड साइड लाल भी दिखाई दे रहा है कुछ पानी सामने पड़ा हुआ दिख रहा है।

चित्र के अंदर हमें एक शो रूम दिखाई दे रहा है शो रूम के अंदर एक लाल कलर का बोर्ड़ सफ़ेद रंग का पूत लगा हुआ है ।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

चित्र के अंदर हमें एक मैदान दिखाई दे रहा है ।

मैदान पर कुछ लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

और उनकी फर्श और सफेद रंग का और छत भी सफेद रंग की आसपास सफेद कलर की जालियां लगी हुई है हरे रंग की दीवार भी दिखाई दे रही है।